फूल दिखाई दे रहे है और एक खम्बा लगा हुआ है एक औरत खड़ी हुई है सामने एक घर बना हुआ है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है एक बिजली का तार दिखाई दे रहा --

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे काफी सारी मछलीयां दिखाई दे रही है कुछ मछली बड़ी दिखाई दे रही है दो खंबे दिखाई दे रहे है।

एक आदमी वहां बैठा हुआ दिखाई दे रहा है एक लेडिज खड़ी हुई दिखाई दे रही है सामने एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है दुकान मे आम के पेड़ की तोरण लगी --

और बाकि लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग निकलते हुई दिखाई दे --

और वह अपनी फोटो खिंचवा रहा है। एक पॉलीथीन दिखाई एक उसके पीछे पन्नी लगी हुई है। लाल रंग की चेयर लगी हुई है और वो खड़ा हुआ --